ऑफिस जैसा लग रहा है आई थिंक ये बैंक है इसमें अलग अलग डेस्क बने हुए हैं।

जो वाइट कलर के हैं और पीछे कु--